उस आदमी ने व्हाइट कलर के शर्ट पहनी हुई है।

इस फोटो में हमें एक लाइट के खंभे भी दिख रही है।

इस फोटो में हमें एक आदमी भी दिख रही है।

इस फोटो को दिन के उजाला में खींची गई है।

इस फोटो को एक बुक के स्टोर से लिया गया है।

इस फोटो में हमें एक रास्ता भी दिख रहा है।

इस फोटो में हमें दूर पे घर दिख रही है।

इस घर में येलो कलर की दिवारे दिख रही है।

इस फोटो में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहा है।

उस बिल्डिंग के अह में हमें खिड़कियां भी दिख रही हैं।

इस फोटो को दिन के उजाले में खीची गई है।

इस फोटो में बेंच भी दिखाई दी गई है।

फोटो में हमें बहोत सारा सीस दिख रही है।

इस फोटो में बिल्डिंग भी दिख रही है।

इस शॉपिंग मॉल के ऊपर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक डस्टबिन भी देख रही है।